मिलती है और यहां बहोत सारे नल भी है।

और बहोत बड़ा एक टेबल रखा हुआ है।

रखे हुए हैं यह बहुत ही बड़ा और आलिशान होटल है।

ए बहोत ही भारी वाहन है इसमें टायर भी--

और यहां कुछ जमीन भी दिखाई दे रही--

ये तस्वीर बहोत सारे स्टूडेंट्स की है।

जो काले रंग का हैं।

इसे मंदिर जैसे आकार में--

में अलग अलग रैक बने हुए हैं।

बंद है। यहां पर बहोत सारी जानकारियां हिंदी में लिखी गई है।

यहां पर बहोत सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर बहुत सारी मालाओं की है।

बहोत सारे फूल भी दिखाई दे रहे--

ये तस्वीर एक बंगले की--

ये तस्वीर एक माता रानी की मूर्ति की है यहां पर--